और कुछ नमकीन दिखाई दे रहे हैं कुछ मूंग दिखाई दे रहे हैं कुछ चना दिखाई दे रहा हैं ।

इसमें एक मोटर साइकिल भी दिखाई दे रही है और कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहा हैं।